सामने की साइड में दरवाजे के पास कुछ गमले रखे हुए हैं कुछ पेड़ भी नजर आ रहे हैं।

कुछ लकड़ी के काटन रखे हुए हैं एक लेडिज भी खड़ी हुई है लेडिज के हाथ में एक थैला है मुहँ पे मास लगा हुआ है।

कुछ पेड़ भी नजर आ रहे हैं कुछ गमले हैं जिनमें प्लांट लगे हुए हैं।

अन्दर की साइड में एक और खिड़की दिखाई दे रही है।

पार्क है पार्क के बाहर ए सडक पर एक --

बेंच पड़ी हुई है उसके बराबर में डस्टबिन रखी हुई है अब अन्दर की साइड में --

कुछ पेड़ नजर आ रहेहैं एक बिल्डिंग भी दिखाई दे रही है।

एक रोड दिखाई दे रही है रोड के सामने एक बिल्डिंग नजर आ रही है।

कुछ फूलो की क्यारियाँ भी दिखाई दे रही हे कुछ बड़े-बड़े पेड भी नज़र आ रहे हैं।

कुछ म मेज भी रखी हुई है कुछ गमले रखे हुए है बैलून से भी लगे हुए है।

चारो ओर कुछ कुर्सिया ब्लैक कलर की रखी हुई दिखाई दे रही हैं।

एक सूटकेस के ऊपर वहां येलो कलर का पल पर्स रखा हुआ है उसके आद आगे भी एक आदमी जा रहा--

जाली भी लगी हुई है रोड के ही किनारे एक आदमी बात करता हुआ दिखाई दे रहा है।

एक बड़ा सा हॉल है हॉल के सामने एक रिसेप्शन पर दो आदमी --

वह एक आदमी बैठा हुआ है। एक आदमी खड़ा हुआ --

एक हॉल है हॉल के सामने दो रूम है जिसमे एक रूम एक बेड दिखाई दे रहा है दूसरे रूम का दरवाजा बंद है।

लाइट वगेरा है दो गमले भी रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

एक होन-होन शोरुम है जहाँ पर--

चार पांच आदमी बैठे हुए हैं जिनमें से एक तबला हारमोनियम वगैरा बजा रहे--

एक आदमी एक औरत साथ में खडे हुए हैं उसके पीछे ए --

उसके बराबर में कुछ बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

सेल्फी ले रही हे एक चेयर पर बैठी हुई है उसके बराबर में कुछ --

एक झोपडी दिखाई दे रही हे झोपडी के बाहर तीन आदमी खड़े हुए।

एक बड़ा सा होल हे होल के बाहर गेट पर --

एक आदमी और एक लेडिस दिखाई दे रही है लेडिस ने अपना पर्स नीचे जमीन पे रखा हुआ है उसके हाथ में कुछ है सामान।

दोनों ने अपने मुह पर मास लगा रखा हे सेनेताइज की एक बड़ी सी बोतल --

सामने जमीन पर कुछ नीबू के रखे दिखाई दे रहे है गाजर टमाटर बेगन रखे हुए है।

कुछ प्लास्टिकग के कट्टो में सामन रखा हुआ हैं ।

एक होल हे होल में रिशेप्सन पर एक लेडिज खड़ी हुई हैं।

सामने की साइड में कुछ कुर्सिया और मेज रखी हुई हैं।

स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है स्विमिंग पूल के चारों तरफ किनारो पर--

सजावट हो रखी है एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिल्डिंग में कुछ खिड़कियां नजर आ रही हैं।

रोड हे रोड के किनारे एक काउंटर हे काउंटर --

इस पिफ्टी लिखा हुआ हे उसके बराबर में एक चेयर पड़ी हे कुछ सामान रखा --

दिखाई दे रहा हैं उपर की साईट में गमले रखे हुए हैं ।

बड़ी सी बिल्डिंग नजर आ रही हे छोटी छोटी खिडकिया दिख रही हैं।

ते वो दिखाई दे रहे हे निचे बहोत से चपल पड़े हुए हैं।

कुर्सिया रखी हुयी हे जिनमे से एक कुर्सी पर एक आदमी बेठा हुआ --

दो बिल्डिंग नज़र आ रही है एक बिल्डिंग में कूलर दिखाई दे रहा है सामने के साइड बिल्डिंग में खीडकिया नज़र आ रही है।

उपर की साइड में कुछ बेनर लगे हुए हैं।

दूसरी साइड में कुछ चेयर्स रखी हुयी हे ऊपर लाइटिंग हो रही हैं।

एक बड़ा सा हॉल है हॉल की साइड में एक आदमी जाता हुआ दिखाई दे रहा है।

एक बड़ा सा पार्क दिखाई दे रहा हे जिसके बाहर --

केड नजर आ रहे हैं रास्ता दिखाई दे रही हैं जाती हुई साइड में एक आदमी एक लेडीज भी जाती हुई नजर आ रही हैं एक बेंच पड़ी हुई हैं।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

शॉप नज़र आ रही है जिसके बाहर खिड़की पे कुछ कपडे टंग रहे है ।

एक शॉप है शॉप के अन्दर की साइड में कुछ --

साइड में कुछ सामान भी रखा हुआ है कुछ कपडे रखे हुए है चादर राखी हुई है निचे की साइड में --

कुछ पेड़ दिखाई दे रहे है बड़े बड़े से कुछ लेडिज खड़ी हुई है बच्चे स्कूल के बच्चे नज़र आ रहे है जिन होने--

सामने की साइड में एक गार चार पहिया गाडी जाती हुई दिखाई दे रही है कुछ बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे है।

सिड़ियों के बाहर एक दूसरी सीडीयोंकी एंट्री की दिखलाइ दे रही है एक आदमी दो आदमी आपस में बातचीत कर रहे--

रोड है बड़ी सी एक रोड पर एक लेडिज फ़ोन पे बात कर रही है एक बाइक वाला सामने से निकल रहा है।

बी ऍफ़ फोन पर बात कर रहा है एक उत्कार दिखाई दे रही है कुछ ठेले वाले--

एक बड़ा सा हॉल है हॉल में रेड कलर का मेट बिछा हुआ है बोहोत सी चेयर बिची हुई है।

जब की दो आदमी खड़े है एक आदमी अन्दर की साइड खड़ा हुआ है दीवाल पर एक बड़ी सी --

एक हॉल है हॉल में एक बड़ी सी कार खड़ी हुइ है।

इस पर प्लास्टिक की चडी हुई है एक आदमी प्लास--

सामने की साइड में एक बिल्डिंग है बिल्डिंग के उपर --

एक जिम है जिम में एक लड़का एक्सरसाइज कर रहा है ।

इसके बराबर में एक आदमी खड़ा हुआ है जिसने ब्लू कलर की टी शर्ट --

साइड में कुछ मशीन रखी हुई है सामने की साइड में रेड कलर का पर्दा --

एल बड़ा सा हॉल है हॉल में एक मेज राखी हुई है मेज के उपर पानी की त्रि --

सामने की साइड में एक सोफा और बोहोत सी चेयर पड़ी हुई है।

उ हुम्म मारुती खड़ी हुयी हे सामने एक बाइक भी खड़ी हुई हे सामने की साइड में एक बड़ी सी बिल्डिंग दे दिखाई दे रही हे जिसके बाद--

एक बड़ी सी रोड है रोड के चारो साइड में --

बेठा हुआ है कुछ पेड़ भी नज़र आ रहे है ।

एक बड़ा सा मैदान है मैदान के अन्दर --

बने हुई है और अन्दर एक दरवाज़ा दिखाई दे रहा है।

एक बड़े सी रोड है रोड के किनारे कुछ बाइके खड़ी हुई है ।

येल्लो कलर का ठेला और कुछ कपडे पड़े हुए है ।

वो एक स्कूटी भी खड़ी हुई है एक साइकिल खड़ी है अन्दर की साइड में --